इसमें मुझे आधी टाइल्स लगी दिख रही है।

इसमें मुझे आधा खुदा दिख रहा है।

इसमें मुझे मंदिर में सीढ़ियां दिख रही है।

इसमें मुझे एक गाड़ी खड़ी दिख रही है।

मुझे इसमें एक पानी निकालने का दिख रहा है।

इसमें मुझे पटरी दिख रही है।

इसमें मुझे बड़ी पानी की टंकी दिख रही है।

इसमें मुझे नोटिस बोर्ड लगा दिख रहा है।

इसमें मुझे सोफा रखा दिख रहा है।

इसमें मुझे लोगों की भीड़ दिख रही है।

इसमें मुझे ऑटो गाड़ियां दिख रही हैं इसमें मुझे--

इसमें मुझे हाल दिख रहा है।